कुछ देख रहे है यहां पर--

एक साइड में डमी है जो लहंगा पहनने हुए है--

यह एक लाइब्रेरी है यहां पर--

बहोत सी चेयर्स और टेबल है जहां पर तीन चार आदमी खाना खा रहे हैं।